getting started with celldesigner के spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे : सेलडिज़ाइनर के bars में सेलडिज़ाइनर में मेनू एवं टूल bars के bars में
सेलडिज़ाइनर workspace में विभिन्न क्षेत्रों के बारे में
सेलडिज़ाइनर के components के बारे में जिसमें species एवं reactions शामिल हैं
हम यह भी सीखेंगे कि एक सरल network कैसे बनाते हैं
network को सेव करना
image export करना
network को zoom करना
सेलडिज़ाइनर gene regulatory एवं biochemical networks बनाने के लिए एक process diagram editor है
process diagram kitano द्वारा प्रस्तावित किया गया था ये diagram systems biology markup language sbml का उपयोग करके संग्रहित the गए हैं
mac windows xp एवं सेलडिज़ाइनर version 43 का प्रयोग कर रही हूँ सेलडिज़ाइनर लिनक्स एवं mac os x पर भी काम करता है
सेलडिज़ाइनर खोलने के लिए desktop पर सेलडिज़ाइनर के shortcut icon पर double click करें
यह सेलडिज़ाइनर खोलेगा अब इसके बारे में जानते हैं
menu bar में आपको विभिन्न menu विकल्प जैसेfile edit component view database एवं अन्य मिलेंगे
main menu में आपको विभिन्न toolbars दिखेंगे
यहाँ पर editing स्पीशीज़ reactions कम्पोनेंट आदि के लिए toolbars हैं
आगे बढ़ते हुए हम इनमें से कुछ के बारे में सीखेंगे
सेलडिज़ाइनर workspace के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में सीखते हैं
जैसा कि आप देख सकते हैं 5 क्षेत्र हैं
दाहिनी तरफ draw क्षेत्र है
यही वह जगह है जहाँ हम networks ड्रा करेंगें
draw क्षेत्र में कोई भी आकृति जैसेआयत एक oval या एक रेखाखंड जो आप देखते हैं component कहलाती हैं
species reactions या compartment के लिए component एक सामान्य शब्द है
कोई भी सेलडिज़ाइनर websitewww celldesigner org से इन सभी symbols एवं उनके अर्थों की सूची देख सकता है
मैं documents पर click करूंगी
tab startup guide पर click करते हैं जो एक अन्य टैब पर भी है
मैं सीधे पेज number 82 पर जाऊँगी
यहाँ आप विभिन्न symbols और उनके अर्थ देख सकते हैं
अब सेलडिज़ाइनर window पर वापस आते हैं
draw क्षेत्र के नीचे list क्षेत्र है
यहां कोई भी एक model के components एवं functions की सूची दिखा और edit कर सकता है
notes क्षेत्र का प्रयोग component के notes दिखाने और edit करने के लिए किया जाता है
बाईं ओर एक tree क्षेत्र है जो एक tree structure में शामिल components को सूचीबद्ध करता है
इसके नीचे layer क्षेत्र है जो model की सभी लेयरों को प्रदर्शित करता है
borderlines को खिसका कर क्षेत्रों के आकार को बदला जा सकता है
मैं cursor को borderline पर रखूँगी आपको double headed arrow दिखेगा क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने के लिए इसे खींचे
list एवं notes क्षेत्र की स्थिति बदलने के लिए
view विकल्प पर जाएँ list पर click करें और right चुनें
यह list को बदलकर दायीं ओर लाता है down default है
अब slide पर वापस चलते हैं
यह एक सरल network है जिसे हम बनायेंगे
इस network में protein c के उत्प्रेरण में protein a protein b के state ट्रांज़ीशन से होकर गुजरता है
इसके बदले में protein b protein d के state ट्रांज़ीशन से होकर गुजरता है
यह ट्रांज़ीशन protein e द्वारा बाधित होता है
अब इस network को बनाते हैं
मैं सेलडिज़ाइनर window पर वापस जाउंगी
अब file पर और फिर new पर click करें
new document named एक छोटा dialog box खुलेगा
यह name field है
मैं simple networkटाइप करुँगी
यहां कोई भी आवश्यकतानुसार ऊंचाई एवं चौड़ाई बदल सकता है हालांकि मैं default ऊंचाई और चौड़ाई रखूंगी
ok पर click करें आप draw क्षेत्र के ऊपरी बाएं कोने पर प्रदर्शित name देख सकते हैं
अब edit पर जाएं और grid snap एवं grid visible को सक्षम करें
ड्रॉ क्षेत्र में एक grid दिखाई देगा
grid snap components को grid के साथ ठीक से अलाइन करेगा
network पूर्ण हो जाने पर आप grid visible को अचयनित कर सकते हैं
components को जोड़ना शुरु करने से पहले मैं आपको स्पीशीज़ एवं रिएक्शन के कुछ उदाहरण दिखाती हूँ
पहले हम स्पीशीज़ को देखते हैं
यहाँ the गए संकेत generic protein receptor ion channel truncated protein gene rna आदि हैं
अब reactions देखते हैं पहली है state transition heterodimer association dissociation catalysis inhibition आदि
हम species टूल बार में पहले icon पर क्लिक करेंगे यह icon protein के लिए है
draw area में कहीं भी click करें जहां आप इस species को रखना चाहते हों
मैं इसे draw area के बाईं ओर रखूंगी
एक छोटा dialog box खुलेगा और species का name पूछेगा
मैं नई species का name a रखूँगी तथा ok पर click करुँगी
list area में बदलाव को भी देखें
जैसाकि आप देख सकते हैं कि हमने draw area में एक नई स्पीशीज़ जोड़ दी है इसी तरह मैं b जोड़ूँगी
किसी भी component को edit या move करने से पहले आपको इसे चुनना होगा
component को चुनने के लिए उस पर click करें सुनिश्चित करें कि ऐसा करने से पहले select icon on हो
मैं a के बग़ल में b को लाना चाहती हूँ तो b पर click करें और इसे चुनें
इसे खिसकाकर a के बगल में रखें
अब हम देखेंगे कि component का आकर कैसे बदलते हैं
मैं a पर click करुँगी हमें उस पर छोटे squares वर्ग दिखाई देते हैं
ये आकार परिवर्तन करने के लिए handles हैं
मैं इस किनारे पर cursor रख कर खींचती हूँ
हम देखते हैं कि a का आकार बदल गया है
component के आकार को बदलने का एक और तरीका है जिसे हम आगे के tutorial में सीखेंगे
आप ctrlz दबाकर पिछले कार्यों को undo कर सकते हैं
यदि आप redo करना चाहते हैं तो ctrly दबायें
आप सीधे undo और redo के आइकॉन पर click करके भी यह कर सकते हैं
add reactions को जोड़ते हैं
एक reaction दो objects के बीच का interaction है
यह एक state ट्रांज़ीशन reaction है
अतः मैं reaction toolbar में state transition icon पर click करूंगी
a के किसी भी किनारे पर और फिर b पर click करें
इस प्रकार आप देख सकते हैं कि reaction arrow अब a और b को जोड़ती है
पहले चुने गए component को reactant के रूप में माना जाता है
तो हमेशा पहले reactants को select करना याद रखें
default reaction आईडी re1 के re1 में the है
add स्पीशीज़ c जोड़ते है और पिछली slide में दिए गए अनुसार उचित स्थिति में रखते हैं
मैं reaction toolbar से इस icon का चयन कर रही हूं यह catalysis के लिए है
मैं c के किनारे पर और state transition reaction के square symbol पर click करूँगी
add मैं स्पीशीज़ d जोड़ूँगी और इसे b के बगल में रखूंगी
add b से d तक एक state transition reaction जोड़ें default reaction आईडी re2 है
मैं स्पीशीज़ e जोड़ूंगी और पिछली slide में दिए गए अनुसार उचित स्थिति में रखूंगी
अब मैं reaction toolbar से इस icon को चुनूँगी जो inhibition reaction को प्रदर्शित करता है
मैं e के किनारे पर और state transition reaction के इस वर्गाकार symbol पर click करूंगी यह दो बिंदुओं को जोड़ेगा
अब हम एक सरल network देख सकते हैं
अब अपने काम को सेव करें
file पर जायें save as पर click करें
मैं इसे simple network name दूँगी
यह हमारे काम को xml format में सेव करेगा save पर click करें
अब हम सीखते कि एक image को export कैसे करते हैं ऐसा करने के लिए file> export image पर जाएँ
आप image को पीडीएफ पीएनजी जेपीईजी आदि जैसे विभिन्न फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं
मैं इसे jpeg image के रूप में सेव करुँगी save पर click करें
आइए देखते हैं कि network को zoom कैसे करते हैं
हमारे पास zoom के 4 विकल्प हैंzoom इन zoom out zoom fit zoom reset
मैं दो बार zoom in icon पर click करूँगी हम मैग्नीफाइड image देख सकते हैं
अब मैं zoom reset पर click करूँगी network वास्तविक आकार में वापस आ जाता है
getting started with celldesigner का यह spoken tutorial यहीं समाप्त होता है
संक्षेप में हमने सेलडिज़ाइनर में menu एवं tool bar के bar में सीखा
सेलडिज़ाइनर के विभिन्न क्षेत्र के बारे में स्पीशीज़ एवं reactions जैसे components के बारे में
हमने स्पीशीज़ एवं reaction components की मदद से सरल network बनाना सीखा
इसके अलावा हमने zoom करना network को सेव करना तथा एक image को exporting करना भी सीखा
एक assignment के रूप में सेलडिज़ाइनर 43 की मदद से एक network बनाएँ
इस network में उत्प्रेरक protein c की उपस्थिति में a और b protein संयुक्त होकर एक यौगिक यौगिक1 बनाते हैं
यह यौगिक उत्प्रेरक d के उपस्थित होने पर degraded हो जाता है
आपको एक ऐसा network प्राप्त होना चाहिए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
spoken tutorial project team कार्यशालाएं आयोजित करती है तथा ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र प्रदान करती है अधिक जानकारी के लिए कृपया contact @spokentutorial org पर संपर्क करें
spoken tutorial project talk to a teacher project का एक भाग है यह nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा समर्थित है
इस मिशन से संबंधित अधिक जानकारी
यह ट्यूटोरियल this अमित कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद